काफी सारे लोग बेंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और--

रनिंग वाला मशीन है जो कि एक ब्लैक कलर का--

लगभग दस से बारा मशीन यहां पर लगी हुई है और अंदर का काफी--

काफी सारी मशीन्स काफी सारे वर्ल्डिंग्स वायर्स --

काफी सारे टेबल काफी सारे रिंचेस --

एक ग्रे कलर में और एक वाइट कलर में पेंट हुई है।

पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां कोई एक --

और काफी अच्छे से डेकोरेशन भी की गई है जो कि--

दूसरे तले पे है और नीचे तल्ले पर कपड़े की दुकान है।

पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां कोई एक पार्क का नजारा है जहां पर--

एक रेंजर साइकिल खड़ी नजर आ रही है और पार्क में काफी सारे लोग आपस में बैठकर --

जो कि आंख में एक चश्मा लगाए हुए सर की बात को काफी ध्यान से सुन रहा और--

पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां कोई एक अ पल्चर की--

एक सौ साठ सी_सी की बाइक है जो कि आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक्स आती हैं।

छोटी बाइक लगती है और उसके अ बगल --

पड़ी हुई नजर आती है जो कि ट्रेन ग्रे कलर में उसका छत है।

रेड कलर के पिलोज भी रखी गई हैं उसके पीछे का गोल्डन कलर का --

एक लेन का हाईवे है जो कि पहाड़ों के बीच में होते हुए --

टेबल लगाकर एक काली तरह की शर्ट पहनकर बैठा हुआ नजर आ रहा है और टेब --

बड़े-बड़े और छोटे-छोटे टुकड़ों के --

खिलौने भी रखे गए हैंजो कि देखने में काफी डेकोरेटेड और--

बहुत ही सुंदर भी लग रहे हैं और उसके सामने एक कांच--

यहां कोई एक मोबाइल शॉप है जहां पर काफी सारी मशीने --

आपको एक एक खेत का नजारा है जहां पर अच्छा लग रहा है।

तैयार की जाती है और उनके बीच में काफी सारे --

छोटी कैरीज में अ पौधे लगाए गए--

पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां कोई पुल के नीचे के ऊपर का नजारा है जहां पर एक बड़ा सा--

स्टेज बनवाया गया है जो कि सीमेंट का है और यहां--

एक छोटा सा घाट भी बना हुआ है जो कि--

ढेर सारे बच्चे तीन टेबल पर--

डेस्क पर कॉपी रखकर मैम की बातों को नोट कर रहे है और दीवार पर काफी सारे--

डिजाइनस की तरह बनाया गया है जहां पर काफी सारे टायर्स के ऊपर--